कंबल भी रखे हुए हैं और बगल में कुर्सी भी है।

और वो उस जे_सी_बी से खुदाई हो रहा है और

यह कोचिंग और यहां पर बहुत से छात्र बैठकर पढ़ रहे हैं।

यहां पर दो गो मोटरसाइकिल लगे हुए हैं और कुछ दुकानदार समान बेच रहे हैं।

और आगे कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं।

एक घर है और उसके दीवार पर अपना एंड अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है।

उम एक आदमी बैठ के कुछ लिख रहा है उनके पीछे--

ऊपर गोल्डन नर्सरी लिखा हुआ है।